यहां पर एक मैदान है और यहां पर कुछ बच्चे कुछ खेल खेल रहे है।

और इस दुकान में काफी सारी चीज़ें टंगी हुई है यहां पर काफी सारे कपड़े लगे हुए हैं।

और आसपास का भी सारा सामान भी पड़ा हुआ है।

और यहां पर का काफी सारी कुर्सियां पड़ी हुई है।

और सामने कुछ महिलाएं और व्यक्ति दिख रहे हैं।

और यहां पर आस पास काफी हरियाली है काफी सारे पेड़ पौधे खड़े हुए है।

यहां पर सामने एक बहुत बड़ा मंदिर सा बना हुआ है।

और उसके अंदर एक गाड़ी दिख रही है वाइट कलर की।

यहां पर कुछ व्यक्ति इसमें दवाई लगा रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है और यहां पर सामने काफी सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

पत्ते के बॉक्स रखे हुए हैं।

यहां पर सामने एक रुम सा है और इस रुम से में एक गेट लगा हुआ है।